ये काफी बड़ा-सा ग्राउंड बना हुआ है इस ग्राउंड घास भी उगी हुई है और यहाँ पर काफी सारी चेयर्स रखी हुई है।